माँ बासमति प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है ऊपर में एक पेड़ है।

भगवान का दिवार जिसमें डॉ.एस मिराज हुसैन लिखा हुआ है भवन के दीवार में दो खिड़की लगा हुआ है।

चैनल गेट लगा हुआ हैं इसमें हरे रंग का पर्दा लगा हुआ हैं एक दुकान मेडिकेयर फर्मा है उसके सामने एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है जो सफेद का कपड़ा पहना हुआ --

एक खेत एक जंगल है जिसमे कुछ बहोत सारे पेड़-पौधे है जंगल में एक बोर्ड लगा हुआ जिसपे महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लिखा हुआ है इसमे कुछ बड़े-बड़े पत्तों वाले पौधे है।